और एक लोग भी फोटो खींच रहा है ये पथरीली जगह में और ये पत्थर भी काफी बड़े-बड़े दिख रहे और ये लोग दो लोग हैं निचे पत्थर के।

जो मरीज दवा दिख दवा ले रहे हैं और काफी बेड भी बिछे हुए हैं इस हॉस्पिटल में।

हमे दिखाई दे रहा है और ये एक मार्केट का चित्र है और यहाँ पे काफी --

बड़ा मार्केट है और यहाँ पे काफी दुकाने भी दिख रहीं --

और यहाँ पे काफी लड़किया बैठ के पढ़ रही हैं और इसके सामने एक व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है और एक टीचर पढ़ा रहे है।

कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है और ये घूमने की जगह और यहाँं पर काफी लोग घूमने भी आते और काफी फूल पेड़ पौधे भी है और फूल भी --

और ये जंगल देखने में भी बहोत खूबसूरत दिख रहा है और ये जंगल में भी काफी फूल भी लगे हुए हैं और घना जंगल है ये।